दो अलग-अलग बिल्डिंगें देख पा रही हूं जिसमें से एक बिल्डिंग का रंग लाल कलर है वह दुसरी बिल्डिंग का कलर --

दो से तीन बोहोत ही बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है।

जिसमें इस कैफे का नाम स्पीड कैफे लिखा हुआ है।

एक सामने खड़ा हुआ वेह काले रंग के कपड़े पहना हुआ लड़का भी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान पर और खाने पीने का आइटम भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

कपड़ों के रैगों में सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सा सफेद रंग का पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी सफेद रंग की पानी की टंकिया दिखाई दे रही--

बहोत बड़ी सी सौंदर्य प्रसाधन की दुकान दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में एक बहोत ही बड़ा सा आलीशान सफेद रंग से पुता हुआ--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

ये यह एक बिजली का तार जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है।